कुछ दुकाने नजर आ रही हैं दुकानों पर कुछ नाम नजर आ रहे हैं जैसे लाइव वाला प्रीमियम श्री संगम लेडीज एंड जेंट्स पार्लर --

कुछ तार नजर आ रहे हैं जाते हुए कुछ बड़े-बड़े खंभे पड़े हुए नजर आ रहे हैं।

दो कार खड़ी हुई हैं अंदर भी एक आदमी खड़ा हुआ है कुछ मशीनें नजर आ रही हैं ऊपर लिखा है गो मैकेनिक आर_के मोटर्स --

और कांटेक्ट नंबर लिखे हुए नजर आ रहे है एक ब्लैक कलर का पट्टा नजर आ रहा है एक लाल कलर की पट्टी नजर आ रही है हाथ मे मोबाइल नजर आ रहा है।

कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं कुछ टू व्हीलर ननजर आ रहे हैं आसमान नजर आ रहा है बादल नजर आ रहा है।

एक टेबल नज़र आ रही है टेबल के ऊपर कुछ पौधे रखे हुए नज़र आ रहे हैं और उनके बीच में एक आदमी खड़ा होने को जा रहा है एक रंग-बिरंगा पौधा नज़र आ रहा है।

ऊपर एक छज्जा सा नजर आ रहा है एक लाल कलर की कुर्सी नजर आ रही है नीचे कुछ से नजर आ रहे हैं एक डस्टबिन सी नजर आ रही --

हेलमेट दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहे हैं फूल दिखाई दे रहे हैं कुछ आदमी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और एक पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं बाइक खड़ी हुई नजर आ रही हैं सफेद कलर का दरवाजा नजर आ रहा है सफेद कलर की दीवार नजर आ रही है एक कार खड़ी हुई नजर आ रही है साइकल खड़ी हुई नजर आ रही है।

एक पानी का तालाब दिखाई दे रहा है पानी के तालाब के बगल में रास्ता दिखाई दे रहा है जिस पर कंक्रीट पत्थर पड़े हुए हैं घास --

और कुछ फल सब्जियां रखी हुई हैं कुछ डिब्बे दिखाई दे रहे हैं पेड़ दिख--